और शौचालय के आसपास मुझे बहुत बड़े और छोटे पेड़- पौधे दिखाई दे रहे है।

पेड़ पौधे की लग उग रहे है सामने मुझे अ बहुत सारी ईंटे दिखाई दे रही है।

और यहाँ मुझे खिड़की दिखाई दे रही है जिम की दीवार की कलर पर्पल कलर का है जिम के सामान रेड और ब्लैक कलर का लग रहा है निचे कार्पे--